ये एक बस की फोटो है जिसमे नीचे नीले कलर लाल रंग का पेंट है एक शिसा है एक और चमक गाड़ी के अंदर बस के अंदर एक औरत है एक नीचे औरत है।

सफेद रंग के भी बत्तक है लाल कलर के भी बत्तक है एक बाहर खड़ा है और आदमी भी खड़े है।

और आप आसमान देख सकते है और देखने बहुत अच्छा लग रहा है।